गंगा जी में बोहोत पानी पोल के निचा --

एक टोटो में बोहोत सारे सब्जियां रखा हुआ है। आलू रखे हुएं --

पंखा लगा हुआ है बहुत सु --

पैर है आसमानी दिख रहा है नीचे खुला --

बिल्डिंगें हैं आसमान में हाथ दिख रहे हैं |

पीला कलर है पिंक कलर है रेड कलर है ।